और दीवार पे मुझे एक घड़ी दिखाई दे रही है और कुछ अलमारियों के अंदर फाइलें जैसे भी दिखाई दे रही हैं।

पास में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं मुझे ये कोई प्रोग्राम लग रहा है और पीछे कुछ टेंट जैसे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ कुछ लकड़ी के बने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

इनके ऊपर मुझे कुछ शीशे जैसे दिखाई दे रहे हैं एक दीवार पर घड़ी दिखाई दे रही है और पंखे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे सामने दो गाड़ियां दिखाई दे रही है पास में ईंटों का बना कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

और लोहे का बना दरवाजा दिखाई दे रहा है बड़ा सा और इसके आगे एक पोस्टर लगा है जिसमें कुछ नाम भी लिखे हुए हैं जो रेड कलरो में --

इस तस्वीर में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिसके--

इस तस्वीर में मुझे ये कोई रेलवे स्टेशन लग रहा है इसके अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रहे सामने मुझे एक कुछ पोस्टर जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ मकानों की तस्वीरे है और नाम भी लिखा है।

इसके अंदर मुझे कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है दीवार पे वाइट पेंट भी किया हुआ है।

जिसके पास मे मुझे कुछ रूम जैसा दिखाई दे रहा है और उपल घने सारे तार दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी की बनी हुई कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है और टेबल दिखाई दे रही है।

पास में कुछ ऑटो और मोटरसाइकिल स्कूटर दिखाई दे रही है कुछ महिला भी दिखाई दे रही है।

और एक नमक का डब्बा पानी की बोतल भी दिखाई दे रही है कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां दिखाई दे रही मुझे ये कोई होटल लग रहा है।

मकान दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे मुझे कुछ छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और लकड़ी के बने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी का एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें--

मकान दिखाई दे रहा है जिसपे पेंट भी किया हुआ है वो रेड कलर का किया हुआ है पास में कुछ --